यहां पे हमें दो आदमी दि--

इस चित्र में हमे यहां पे एक गेट डेक डेकोरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें टेबल रखा हुआ है और यहाँ एक कंप्यूटर रखा है।